और जो पके हुए है उनका लाल कलर है साइड में जो डलियाँ रखी हुई है वो जाली की प्लास्टिक की डलियाँ हैं।

एक सामने छोटा सा झंडे का भी बना हुआ है और ऊपर आसमान नीला नज़र आ रहा है।

ये एक स्टेशनरी की शॉप हैं जिसमें सब तरह के पेन रखे हुए हैं पेंसिल रखी हुई हैं और एक रैक बनी हैं ब्राउन कलर में--

ये एक बिल्डिंग है रेहाइसी बिल्डिंग है इसमें सामने जालियों से इसकी बालकनी है पूरी लोहे की जालियों से कवर्ड है ये बिल्डिंग दो कलर में है एक नारंगी है और एक पीला हैं।